इसमें ना ई दिख रहा है। पानी सिंचाई करने वाला है और --

इधर से ये जेंट्स जा रहें हैं और डाक घर का स्टाफ है क्या पता नहीं।